और यहां शायद ये मैच का ग्राउंड है स्टेडियम है यहां देखो कुछ ये बंदा जा रहे गुजर रहे हैं यहां से जो कि काफी बढ़िया लाइट भी है इसमें लगी हुई रोशनी --

चलो यहां काम की बात करने चलते हैं क्या पता थोड़ा बहुत काम और अच्छे से इंटरव्यू देते हैं।

और कितना सुन्दर लग रया यार रेड कलर का और इसपे जो लिख रिया व्हाइट कलर से मिस काफी --

ऐसा लग रहा है राजा और महाराजा के टाइम की हैं और कितने पुराने-पुराने हथियार भी हैं देखो यह मूर्ति भी बनी हुई है मिट्टी की काफी अच्छे से रख है इन्होंने इसको --

भाई देखो ये तालाव कित्ता अच्छा लग रहा है।

और ये तलाव कितना फोटो भी कितना अच्छा आया है। काफी बड़ा तालाव है ये। इसमें मच्छियाँ वगैरा कछुएँ वगेरा भी पलते हैं। गांव के लोग पालते हैं। बढ़िया है।

ये तो लोहार की दुकान है और यार इन्होंने कितने सारे नट बोल्ट बनाए हैं ये --

और देख इसके पास में कई वैरायटी की मछली रखी हुई है इससे पूछते हैं सबसे महंगी मछली कौन सी है इसके पास वो लेते हैं और बनाएंगे उसको --

चलो घर के लिए कुछ खरीद लेते हैं राशन वगैरह यार राशन भी नहीं है घर पे --

देखो यह कितना पुराना एक पुला बहुत पुराना स्कूला है और काफी पुराना बना हुआ भी है लेकिन देखो आज भी इसका गेट का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है।

ने ग्राउंड में मैच खेलता है लोग आपस में मिलजुलकर लौंडे मैच खेलते हैं यहां पे --

ये बंदा जिम में आया है और इसने देखा मशीन है बहुत अच्छी है यहां की काफी अच्छा लगा इसको मार के --

काफी सुंदर ब्रिज है ये बोहोत बढ़िया है और ये नहर बोहोत लंबी नहर है बोहोत दूर तक निकली हुई है बोहोत दूर तक फैली हुई है। सारी नहरों से मिली हुई नहर है ये।